इस मॉल में नीचे साइड बहोत सी दुकाने लगी हुईं हैं।

मुझे इस फोटो पर एक ऑफिस टाइप का कमरा--

मुझे इस इमेज पर एक स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यह शेर दाहिने साइड देख रहा है इस शेर का रंग गेरुवा रंग है।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

इस फूल मंडी में क्रेता व विक्रेता दोनों मौजूद है।

मुझे इस फोटो पर एक बजार देख रहा है जो सब्जियों--

इस दुकान के बाहर एक बहोत ही बड़ी सी पेंसिल रखी हुई है वेह दुकान में स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ है।

अलग अलग टेबलों में तीन तीन कुर्सियां भी लगी हुई है इसमें एक वेटर --